यह दो रंग का है एक तो लाल और एक हरे कलर का।

एक एयरपोर्ट है जहाँ पर एक एरोप्लेन खड़ा हुआ है और कुछ आदमी खड़े होकर बात कर रहे हैं और कुछ लोग अपना टहल रहे हैं।

और कुछ बछड़े भाग भी रहे हैं और यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है।